यह एक दुकान है न्यू जो ओपनिंग किया गया है यहां पे रंग-बिरंग का बलून सजाया है।

ये गारेज गेराज में कार रेपैरींग कर रहे हैं।

ग्राउंड है खेल का पार्किंग हैं | कॉलेज --

एक मूर्ति है यहां पे उधर वृक्ष है घर है।

इधर ब्यूटी पार्लर ऑनलाइन सेंटर है।

ये विवाह भवन है पूरी तरह से यहाँ पे सजावट किया हुआ है।